ढेर सारे रंगों के हैं।

बगल में दीवार में स्वच्छता के बारे में कुछ बताया जा रहा है।

प्लास्टिक में कई चीजे हैं।

इस चित्र में तीन लड़का है।

ऊपर एक पंखा है और ब बल्ब भी चल रहा है।

जिसका नाम झींगा लाइन होटल है।

नीचे सीढ़ी बनाई हुई है जिसका रंग मरून है।

इसमें जालिया लगाई हुई है जिसका रंग काला है।

जिसमें दो तीन तरह के बल्ब लगे हुए हैं जिसका रंग नीला नारंगी और हरा--

इसमें ढेर सारे दारू रखे हुए हैं अलग अलग तरह के।

नीचे में कांच के गिलास भी है।

दो खिड़की दिख रहे है।

बाहर एक कारपेट है जो लाल--

जिसपे लिखा हुआ है रेलवे होलीडे होम ।

इसके पत्ते का रंग हरा है।

इस चित्र में एक विद्यालय है।

ढेर सारे बच्चे नृत्य कर रहे हैं।

यह चित्र में एक घर दिख रहा है जिसका रंग गजरी कलर का है और लाल है।

जिसके बाहर बैठने का चबूतरा बनाया हुआ है।

जिसका रंग हल्का हरा और उसका गेट का रंग सफेद है।

चारों तरफ गार्डन बनाई हुई है ।